काँच का गेट लगा हुआ है कुछ विज्ञापन है काँच के गेट के ऊपर चिप --

इस दुकान में कांच का दरवाजा लगा हुआ है और बाहर अ सफ़ेद और लाल कलर के गुब्बाराें से --

में एक मंदिर दिखाई दे रहा है इस मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित है और पीछे एक गाय दिखाई दे रही हैं।

और कुर्ता पैजामा पहने हुए है दोनों के गलें में फूलो की माला दिख रही है।

एक हवाई अड्डा दिखाई दे रहा है जिसमे एक सफ़ेद और नील कलर का प्लेन खड़ा है जिस पर इंडिगो लिखा हुआ है।

आ प्लेन में काम करने वाले कर्मचारी खड़े हुए दिख रहे है एक आदमी खड़ा है एक लड़की खड़ी हुई है जो गोदी में बच्चा लिए हैं।

और एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर सारूहीड चाय बाग बागान--

इसमें एक पहाड़ दिखाई दे रहा है पहाड़ में ऊपर से निचे की तरफ पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है एक झरना दिखाई दे रहा है।

उसमे एक बड़ा सा मैदान दिखई दे रहा है बगीचा दिख रहा है बग़ीचा में पुरे में घाँस लगी हुई दिखाई दे रही है।

बरामदे की दिवार पर कुछ खिड़किया बनी हुई है खिड़कियो पर लोहे की जाली हुई है बरामदे में बहुत सारे --

में एक लंबाई में बना हुआ खम्बा दिखई दे रहा है।

टिन शेड के नीचे कुछ कुर्सियां रखी हुई है एक पंखा लगा हुआ है।

लगे हुए है कुछ साइकिल --

भवन दिखाई दे रहा है भवन के सामने एक टिन का सेड लगा हुआ है टिन के--

खिड़की बनी हुई है खिड़की जाली लगी हुई हैं जो लाल कलर से पुती हुई है इसमें एक बोर्ड लगा है जिसमे--

यहाँ एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमे बोर्ड लगा हुआ है ऐसे --

कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है कुछ घास दिखाई दे रही है सड़क पर एक माल वाहन खड़ा हुआ है जिसमें बहुत सारे--

जिसमें एस. के. डी. जे हाईटेक लाइट हाउस लिखा हैं।

और सड़क और कुछ ठेले लगे दिख रहे है।